है ना एक इसमें न बहुत सारी लड़कियां बैठी है पूरा रूम है टी_वी दिख रही है और है न एक है न वो है सर है वो है उनको सीखा रहे है।